यहाँ पर हमे एक चर्च जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमे रखे हुए कुछ सोफे दिखाई दे रहे है उस सोफा पर बैठा हुआ हमे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है काफी सारी जलती हुई लाइट्स दिख रही हैं।

और एक बड़ा स- कुछ गाड़िया दिखाई दे रही है यहाँ पर हमें डस्टबिन दिखाई दे रहा है खड़ी हुई कुछ बाइक दिखाई दे रही है।

घास दिखाई दे रही है यहाँ पर हमे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हमे एक दफ्तर जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमे एक बड़ा सा हॉल दिखाई --

वायर्स दिखाई दे रहे है अन्दर की ओर हमे एक पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर हमे एक सैलून दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमे एक अन्दर बड़ा सा कांच दिखाई दे रहा है और बाहर काफी सारी माला --

दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है दिवार पर लगा हुआ एक --

तार जैसा और रस्सी जैसी पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं ।

यहाँ पर हमे खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

का लगा हुआ गेट दिखाई दे रहा है और बाहर एक बड़ा हुआ लगा बोर्ड बोर्ड दिखाई दे रहा है और बाहर हमे एक कूलर लगा हुआ भी दिखाई --